हरे घास दिख रही है उसकी दूर दूसरी तरफ बहोत सारे पेड़--

सामने ही एक की शॉप शोरूम दिख रहा है और स्टेयर्स भी नजर आ रही उसके ऊपर रेड कलर --

इस इमेज में एक झोला नजर आ रहा है जिसके किनारे किनारेये